ऊपर एक संस्कार का बोर्ड लगाया हुआ है एक बोर्ड यह पीले पुता हुआ हैं ।

खिड़की जैसी बनी हुई है एक दीवाल है यह मट जो पत्थरो की बनी हुई है।

जाली लगी है सूरज निकला हुआ है निचे बहोत सारी गट्टी-गिट्टी बिछी हुई है।

एक झंडा लगा हुआ है रोड है बहुत सारी घाटियां है बहुत सारे पेड़ - पौधे लगे हुए है।

एक गाड़ी रखी हुई है चेयर रखी हुई है एक वाइट कलर की यह बिल्डिंग पुती हुई --

तरबुज रखे हुए है ऊपर वाइट कलर का टेंट जैसा बना हुआ है दुकान लगी हुई है।

पर यह बहोत सारा सामान रखा हुआ है एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है एक कार और खड़ी हुई है ऊपर रेड कलर का टिन जैसा बना हुआ हैं ।

यहा फर्श ही लगी हुई है दो बड़ा पेड़ लगा हुआ है पास में जाली लगी हुई है वाइट कलर की --

बहोत सारी घाँस लगी हुई है हरे कलर की पीले कलर की एक अंकल खड़े हुए है।

एक मकान बना है वाइट कलर का पुता हुआ है ऊपर जाली लगी है वाइट कलर की और नीचे एक पेड़ लगा हुआ है पोस्टर लगा हुआ है खिड़कियाँ बनी है गाड़ी खड़ी हैं ।